जिसमें मुस्लिम धर्म के लोग इबादत करते हैं।

मस्जिद में एक इमाम साहब होते हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं एक मिंबर होता है जिस पर खड़े होकर खुतबा दिया जाता है मस्जिद में मीनार होती है जिससे पांच वक्त अजान दी जाती है और उन्हें संदेश दिया जाता है।

फ्रेट नमकीन या फिर राइस में भी चम्मच का यूज करते हैं खाना बनाने में भी चम्मच का यूज करते हैं जिस खाना बनाने के चम्मच का यूज करते हैं हम उसे बड़ा चमचा कहते हैं।

उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में आलू की खेती कुछ ज्यादा होती है आलू जमीन में पाया --

हीरो मोटर्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि बाइक निर्माता कंपनी है।

सरकारी इमारतें काफी बड़ी होती हैं सरकारी इमारतें काफी ऊँची होती हैं।

और चाय उपलब्ध की जाती है अक्सर लोग कैंटीन में बैठकर वक्त बिताते हैं और चाय पीते हैं कोल्ड्रिंक पीते हैं अक्सर मुसाफिर लोग --

हर शहर में मौजूद होता है जहाँ पर ट्रेन आती है रुकती है और ट्रेन में सवारियां बैठती हैं और उतरती हैं।

ऊंचा टावर होता है जो कि लोहे की इंगलों से बना होता है यह काफी ऊँचा होता है।

मौजूद होते हैं। शॉपिंग मॉल में हमारी जरूरत का सभी सामान मौजूद होता है। शॉपिंग मॉल में हमारे --

जहां म हम जाकर अपनी फिटनेस को मेनटेन रखते हैं और दैनिक एक्सरसाइज --

ऑटोमैटिक होती हैं और मशीनें बहो --